यह हमारे भारत की बहुत ही लोक चर्चित पूजा है इस पूजा में बहुत से लोग एक जगह एकत्रित होकर अपने मनोरंजन एवं उत्सव का माहौल बनाते हैं।

इस तस्वीर में हम एक हरे रंग का मंच देखने पा रहे है एवं यह मंच देख कर ऐसा प्रतीत होता है की यह किसी शादी का मंच है।

इस तस्वीर में हम दो रिक्शा देख पा रहे है इस तरह की रिक्शा हमारे घर के आस पास के रास्तो पर भी चला करती है।

इस तरह के रिक्शा पे दो से तीन व्यक्ति सवार हो सकते है एवं इस तस्वीर में एक व्यक्ति भी हमें देखने को मिल रहा है।

इस ऑटो पे दो से तीन व्यक्ति सवार हो सकते हैं यहाँ पर ऑटो के बगल में एक व्यक्ति भी खड़ा है यह व्यक्ति देखने में बहोत ही सज्जन मालूम हो रहे हैं ।

इस तरह के व्यक्ति बहुत से कार्य करते है एवं इस तरह के व्यक्ति डाकघर मे भी कार्य करते है।

तस्वीर मे हम संध्या समय देख पा रहे हैं यहां पर एक बहुत ही बड़ा समुंदर है समुद्र के किनारा भी देखने पा रहे हैंयह किनारा बहुत ही समतल है।